बहुत से आदमी देख रहे हैं और मकान भी बना हुआ है।

बड़ा सी नदी दिख रही है नदी में नाव चढ़ रही है नाव में कुछ ऑरेंज कलर का टंगा हुआ है।

और कुछ क्रेट भी रखी हुई है लाल कलर की और साइड में दुकान भी भरी हुई हैएक पेड़ की लकड़ी--